ये चित्र जो है एक जिम सारा सामान रखा हुआ नजर आ रहा है वही पर हमे बाहर फर्नीचर भी लगा हुआ है लकड़ी का लगा हुआ है वो काफी अच्छा लग रहा है वहां पे हमे जो मैट भी फैली नजर आ रही है जिनका कलर नीला है।